ये बहोत घना जंगल नजर आ रहा है।

नीचे भी बहोत सारे फूल दिखाई दे रहे हैं।

सब कोई मार्क्स लगाए हुए नजर आ रहे। पोस्टर लगा हुआ है। ऑक्सीजन सिलेंडर दिखाई दे रहा है। एक रूम दिखाई दे रही है।

घर भी दिखाई दे रहा है।